कहीं-कहीं फूल मन आउ पौधा मन आओ पेड़ दिखत हे आओ घास दिखत हे आओ गमला मन फूल लगे--